ये बाइक ब्लैक कलर की और इस पर एक आदमी चला रहा है।

'' गाएस ये देखिए एक गार्डेन हैं एक वक्ति झूले झूल रहे है आ रही है अगल बगल कुछ नही है। ''

कुछ कोई नज़र आ तो नहीं रहा है लेकिन--

यहां पर आइसक्रीम वगैरह कुछ भी मिलती है सब कुछ मिलता है सब कुछ अवेलेबल है और बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं।

और उसके बगल मे फूल हैं कुछ रखा गया हैं ।